यहां पे बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई है ब्लैक कलर की काले कलर की सफेद कलर की बिल्डिंग खड़ी हुई है खम्मा लगा हुआ है रोड है बगल में --

और का दो जने बैठे हैं लाल कुर्सी है सफेद सफेद वो है।

आगे वोट लगा हुआ है कुछ ब्रांच हैं।

और यहां पे मैडम में खड़ी हुई हैं पर्दे बंद--

यहाँ देख सकते हो भाई कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं कुछ बिल्डिंग हैं रोड डाला हुआ है।

यहां देख सकते हो रोड डला हुआ है। कुछ पेड़-पौधे है गाड़ियां खड़ी हुई है।

जंगल है बहुत बड़े पेड़-पौधे हैं ।